यहां पर कुछ व्यक्ति चेयर पर बैठे हुए है।

इस हॉस्पिटल के रूम में दीवारों पर पेंट हुआ है।

तो सब इसके अंदर ऑफर प्रिंट हुआ है।

वहां पर बहुत सारे गद्दे इस रूम के अंदर रखे हुए है।

इंटर कॉलेज का गेट ब्लैक है।

और इस पर लिखा हुआ है सहारनपुर चौबीस सत्तर जीरो एक।

रूम के अंदर सोफे पड़े हैं और टेबल भी रखी है।

पीछे की ओर लाइट और फूलों से इसको सजा रखा हैं रंग बिरंगी लाइट लगी है।

और इस मकान के ऊपर टीन भी पड़ी है।

हॉस्पिटल में छत मे लाइटे लगी है।

हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी चेयर पड़ी है जिन पर कुछ महिलाएं कुछ बच्चे बैठे हुए हैं।

इस मकान पर ग्रील लगी है। व्हाइट कलर का दूसरा मकान है।

में पेंट हुआ है और इस स्कूल की बिल्डिंग में विंडो भी लगी है।

इस मैदान में कुछ व्यक्ति गोल घेरा बना कर खड़े हुए हैं।

और यहां पर बहुत भीड़ खेत के अंदर नजर आ रही है।

और लकड़ी का गोदरेज की अलमारी भी रखी है।

यह एक मोबाइल की दुकान है।

और पीछे की ओर बहुत सारे पौधे हरे कलर के और कुछ बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं।